जो की एक स्कूल का ग्राउंड है।

तीन लड़के दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं।

और नीचे सफेद कलर की टाइल्स लगी हुई है।

यह तस्वीर में मुझे एक नीला कलर का गेट दिखाई दे रहा है।